उसके सामने बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

जोकि एक बड़ा हॉल टाइप लग रहा है।

जो कि खोदने का उपकरण लग रहा--

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

जो की कुर्सी पर बैठा हुआ है।

उसके सामने एक बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है और एक साइकिल भी नजर आ रही है।

और उस स्थान पर कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

पूरा लकड़ी का बना हुआ है।

है और कुछ लड़के भी--

ये एक बहुत बड़ा मैदान भी दिखाई--

बहुत बड़ा खाना खाने का स्थान--

घर दिखाई दे रही है जोकि शिमला की एक जगह है।

दो लड़कियां नजर आ रही है।

एक दो तीन पहाड़ियां दिखाई दे रही है।